ये एक ऑफिस की तस्वीर है यहाँ पर एक आदमी है जो काउंटर पर बैठा हुआ है उसी के जस्टिस सामने एक कंप्यूटर --

यहां पर बहोत से आदमी लाइन लगाकर खड़े हुए है यहां एक ट्रोली खड़ी हुई है।

यहां पर रोड के लेफ्ट साइड में--

जैसे आलू है प्याज है टमाटर है बैंगन है खीरा है।

और सामने की तरफ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और उससे आगे एक गेट बना हुआ है जिसके नीचे कुछ लोग --

यहां पर बीचो बीच एक फुवारा लगा हुआ है जिसमें बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है।

यहां पर बहोत सारे बच्चे है जो की योगा कर रहे है सबके नीचे एक एक मैट बिछाया गया है।

यहां पर बहोत सारी टाइल्स लगी हुई है।

यहां पर चार चेयर रखी हुई है जो की ब्लैक कलर की है सामने दीवार बनी हुई है जिन पर जालियां लगी हुई है।

यहां पर ऊपर की ओर एक हाईवे बना हुआ है और नीचे की तरफ एक नदी बह रही है और यहां तीन आदमी और एक औरत खड़े हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी लाइटिंग होई हुई है और यहां पर एक फर्श है जो टाइल से बना हुआ है जोकि लाइटों के कारण बहोत ही चमक रहा है।

रनिंग वाली मशीन रखी हुई है एक्सरसाइज वाली मशीन लगी हुई है यहां पर लाइटिंग जली हुई है और सामने की तरफ एक मिरर लगा हुआ है।

ये एक व्हाइट कलर की कार है यहां पर कुछ चेयर्स रखी हुई है पास में जो की व्हाइट कलर की है।

उसके अलावा यहां ग बहोत से गमले रखे हुए हैं जिसमें व्हाइट कलर के गुलाबी कलर के येलो कलर के --